यहां सामने की तरफ एक कार खड़ी है।

और पीछे एक वाटर फाउंटेन भी लगा हुआ है जिसको की सफेद रंग के झालर से सजाया गया है।

यहां सामने की तरफ कई सारे बाइकें खड़ी हैं।

यहां पे कई सारे टेबल और चेयर रखे हुए हैं।

इसका की नाम द सिटी कैफे है और ये काले और सफेद रंग में लिखा हुआ है।

और एक व्यक्ति भी बाइक पर बैठा हुआ है।

यहां कई लोग हैं जो की नदी में नहा रहे हैं।

जहाँ काले रंग का दो चेयर लगा हुआ है।

और फर्श का रंग सफेद है।